और दो व्हाइट कलर का है और रेड कलर से कुछ लिखा हुआ है।

और बहोत सारे फूल भी लगे हुए हैं।

तीन बच्चे नहा रहे हैं।

और बहोत सारे महिलाएं बच्चे भी हैं।

फर्श का कलर ब्लैक है और दीवाल का कलर रेड और एलो में है।

घर के बाहर बहुत सारे गमले में पौधे लगा हुआ है।

एक झोपड़ी में तीन आदमी है और एक झोपड़ी में चार आदमी है।

यह एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट का कलर व्हाइट से पेंट किया हुआ है।

नीचे में बहोत सारे कुर्सियां हैं टेबल है टेबल के ऊपर बोतल भी है चम्मच है और प्लेट भी है।

और भी बहोत सारे कलर के बैलूंस लगे हुए हैं।

यह एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में बहुत सारे कुर्सियां हैं टेबल हैं।

आदमी के पीछे रूम है उसमें सटर लगा हुआ है ।

यहां बहुत सारे पेड़ हैं।

ऊपर में पोस्टर में लिखा हुआ है जगन्नाथ साह पेड़ा भंडार।

गमले में पौधे भी लगाए हुए है।

दुकान के अंदर दो आदमी है और दुकान के बाहर दो आदमी है।

यह एक चर्च है इसमें तीन आदमी और दो महिलाएं हैं।

दो कुर्सी खाली है एक कुर्सी साइड में भी खाली है।

एक स्टेज है स्टेज का डेकोरेशन फूलों से किया हुआ है।

यह एक मछली का दुकान है यहां बहुत सारे छोटे छोटे मछली हैं।

अंदर में एक स्कूटी है और एक साइकिल है।

बहुत सारे फूल के म पेड़ हैं पौधे भी है और बड़े बड़े पेड़ भी हैं।

एक आदमी बैठा हुआ है वह रेड कलर का टी शर्ट पहना हुआ है।

जैसे कि टायर है डब्बा है और भी बहोत सारे सामान हैं ।